यहा एक रूम है जहाँ पर एक होटल रूम लग रहा है जहां पर काफी अच्छे कर्टन लगे हुए हैं एल_ई_डी लगी और छोटा स्टूल भी लगा हुआ है और यहाँ पर काफी फैसेलिटीज भी दी गई है।

और यहाँ पर एक बेड़ भी है जो की वेल प्लेस्ड है और यहाँ पर डस्टबिन भी रखा हुआ है।